कुछ यात्रीगण स्टेशन पर के बाहर बिछा कर सो रहे है।

इस ट्रक में सामान भरा हुआ है।

समुंदर है इस समुंदर में एक नाव है।

डब्बा रखा हुआ है पाइप रखा हुआ है रखा हुआ है।

गार्डन है इस गार्डन में दो पेड़ लगाया हुआ है गमला में।

एक रेक्सोडेंट हॉल है।

और साधु है साधु अपना मंत्र जाप करवा रहे हैं।